और आप देख सकते हैं कुछ लोग खरीददारी भी कर रहे हैं।

कुछ लोग काउंटर पे खड़े हुए हैं बातचीत कर रहे हुए हैं।

इनकी बाउंड्री पे बहोत सुंदर हरियाली है और बड़े-बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं।

और एक डंडी लगी है उसमें कुछ वाइट कलर का--

पेपर लगा हुआ है और आप देख सकते हैं आगे ब्लू कलर की टंकी रखी हुई।

एक बड़ी सी घड़ी भी लगी हुई है जिसमें--

यहां पे एक स्टूल है एक कुर्सी है।

यहां पे एक टेबल पे बहुत प्यारी प्लेट लगी हुई है।

ग्रीन चटनी और डोसा देख सकते हैं साथ में ही दो गिलास रखे हुए हैं।

और एक टेबल लगी हुई है जिस पर कंप्यूटर रखा हुआ है।

एक बाइक से कोई जा रहा है बहुत प्यारा नजारा है।

लोग बाग चल रहे हैं और एक बड़ी सी बिल्डिंग है।

जिसके नीचे बहुत बड़ा गिट्ठी का ढेर है और एक साइड एक कार खड़ी हुई है।

बाहर के बाजू में आप देख सकते हो एक अच्छा बड़ा पेड़ है हरा भरा--

और पीछे ही देख सकते हैं आप उतरने चढ़ने वाली सीढ़ियां भी लगी हुई है।

आप देख सकते हैं खेत है खेत में--

लंबी सी टेबल लगी हुई है जिस पर बहुत सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं।

तीन कार पार्क है और उस साइड छोटे-छोटे पेड़ है जिनके नीचे बाइक पार्क है।

आप देख सकते हैं ये एक मोबाइल शॉप है।

और आप देख सकते हैं नीचे बहुत सारी बाइक खड़ी हुई है कुछ जेंट्स एंड लेडीज बैठे हुए हैं।

और दीवाल पर बहुत प्यारी पेंटिंग तस्वीर लगी हुई है।

पे बहुत सारे डॉक्टर्स आइटम रखे हुए हैं।

जिसमें कुछ खादान टाइप की है।

ये एक शादी पार्टी का रिसेप्शन लग रहा है।

इनमें गोल गोल रेलिंग पे काउंटर बना हुआ है।

और बहुत सारी लाइटिंग है बहुत सारे --

घूम रहे हैं खाना पीना खा रहे हैं बहुत सारे लोग--

और ये नीचे आप देख सकते हैं--

हरे भरे सुंदर पेड़ लगे हुए हैं बाहर बाइक खड़ी हुई है।